यहां कच्ची जमीन दिख रही है यहां गांधीजी की लाठी दिख रही है यहां उनका हाथ दिख रहा है।

यह शॉप दिख रहा है। यहाँ रैक दिख रही है।